म्यूजिक चल रहे हैं एक पर्पल रंग का टेंट है सुंदर--

बहोत सारे प्लेस और बड़ी बड़ी--

इस चित्र में एक बहोत सुंदर बड़ी सी नदी है।